चला रहा है लग रहा है जैसे के गेम या फ्री फायर खेल रहा है दोनों बच्चे एक बच्चा अकेला एक बच्चा --

यह नदी है इस नदी में बहोत पानी है इस नदी का इश नदी में पूल है इस नदी के सामने बहोत सारे पैड़ पोधे है इस नदी --

यह खजूर का पेड़ है इस खजूर का पेड देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है इस खजूर खाने में भी बहोत अच्छा लगता है खजूर --

होटल है होटल बोहोत ही बड़ा है और बोहोत ही लम्बा चोड़ा है। इस होटल में बहोत तरह के --

यह बस गाड़ी है। इस बस गाड़ी से हम लोग बोहोत दूर-दूर तक जाते हैं।

यह मूर्ति है। इस मूर्ति में बहोत सारे फल सजा कर रखा हुआ है। मूर्ति देखने मै काफी अच्छा लग --

यह बैंक है। यह बैंक देखने में बोहोत अच्छा लग रहा है। इस बैंक का इस बैंक का बहोत लम्बा लग रहा है। इस बैंक का कमरा भी देखने में बहोत अच्छा लग रहा है। इस बैंक से हम लोग को पैसा --

हरा-भरा लग रहा है।

लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस तलाब के सामने एक पत्थर पे एक आदमी बैठा है।